एक सफ़ेद रंग का मकान है पीछे पीले रंग का एक मकान है और वहाँ पे ओरई लिखा हुआ है।

यह एक बोहोत बड़ी मीनार है जिसपे ढ़ेर सारी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं।

यह एक स्कूल है। स्कूल के सामने से सड़क जा रही है। स्कूल का रंग सफेद रंग का है।

गेट और एक खिड़की लगी हुई है। इसमें एक विष्णु जी की मूर्ति है। ज --

यह एक दुकान है जिसपे दीप कंप्यूटर जन सेवा केंद्र लिखा हुआ है। पीछे एक घर है।

यह एक पार्क का सीन है जहाँ पर ढेर सारे टेबल रखे हुए हैं ढेर सारी कुर्सियां रखी हुई हैं ।

ढेर सारे लोग स्कूल के आंगन में बैठे हुए हैं। एक बहोत बड़ा मैदान है ।

यह एक स्कूल है। स्कूल के आगे पीले रंग की बस खड़ी हुई है। हरे रंग का वृक्ष लगा हुआ है।

यह राजकीय हाईस्कूल जमेदपुर का है इसका रंग पीले रंग का है।